गाड़ियां भी दिख रही है मोटरसाइकल --

की दुकान दिख रहा है और बाहर एक स्कूटी भी दिख रहा है।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

चार लालटेन टंगे हुए है।

एक सामान ढोने वाला गाड़ी भी दिख रहा है।

यह एक स्पोर्ट्स किट्स की दुकान है।

एक मोटरसाइकल दिख रहा है।

बिल्डिंग के साइड में एक बाउंड्री भी दिख रहा है।

बिल्डिंग में जाने के लिए एक रास्ता भी दिख रहा है।

एक टेबल दिख रही है।

यहां पर एक मोबाइल फोन दिख रहा है।

यहां पर एक बड़ा सा मैदान दिख रहा है।

यह एक स्कूल की तरह दिख रहा है।

इसको फूलों से सजाया हुआ है।

कुछ व्यक्ति क्रूश को पकड़े हुए हैं।